यह एक फूल है गेंदा फूल जो देखने में काफी सुंदर एवं काफी अच्छे है।

और लोग अक्सर यहाँ लोग नहाने के लिए आते है और मछलियाँ पकड़ने के लिए भी आते है और यहाँ एक झरने बनाये गए है।

बच्चे लोग यहाँ कागज काट के --

यह एक बिल्डिंग है जो काफी बड़ा एवम काफी अच्छी है बिल्डिंग --